इस फोटो में मुझे महिला और ब--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

इस फोटो में मुझे टी_वी दिखाई दे रही है।

इनमें मुझे बहुत सारी ऑटो दिखाई दे रही हैं।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

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

वेल्डिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे बेंच दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे नाव दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुर्सी टेबल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।